ओर काले भी कलर के है कोई इसको बाहर से खड़े होके देख रहा है तोतों को है और वो ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए शायद बूढ़ी है कोई महिला हैं।

ये एक भैंस है के गाय पता नहीं लेकिन ब्लैक एण्ड व्हाइट की है इसके मुँह मे सर मे गले मे पीले से कलर की रस्सी बंधी हुई है।

ये एक लकड़ी की कुर्सी रखी हुई है बड़ी कुर्सी तीन लोग बैठ जाएं इस पर बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया गया है कारीगर द्वारा और यह पूरी लकडी की बनी हुई है।

ये एक गोल्ड प्लस का शहनाज हुसैन का साबुन है और एक फेस वॉश हैं।

डस्टबिन की बाजु में एक झाड़ू भी रखा है और यहाँ पे न बहुत सारे लोग थूकते भी है गुटका खा के।